चार्ट्स इन जीचेमटेबल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे एलीमेंटल चार्ट्स और कस्टम चार्ट्स कैसे बनायें
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 12
04 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 जीचेमटेबल वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलीमेन्ट्स की पिरिऑडिक टेबल और जीचेम्पेंट के साथ परिचित होने चाहिए
जीचेम्पेंट पर सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब एक नयी जीचेमटेबल विंडो खोलते हैं
दश होम पर क्लिक करें
प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें जीचेमटेबल
पीरियोडिक टेबल ओएफ थे एलिमेंट्स आईकन पर क्लिक करें
व्यू मेन्यू पर क्लिक करें एलिमेंट्स चार्ट्स सलेक्ट करें
प्रदर्शित विकल्पों की सूची के साथ एक सबमेन्यू खुलता है
electro नेगेटिविटी पर क्लिक करें
पॉलिंग electro नेगेटिविटी बनाम एटोमिक नंबर का चार्ट प्रदर्शित होता है
चार्ट में उच्चतम electro नेगेटिविटी वैल्यू 4 है
मैं electro नेगेटिविटी चार्ट को बंद करुँगी
इसी तरह व्यू मेन्यू में भिन्न चार्ट्स उपलब्ध हैं एलिमेंट चार्ट्स मैं मेल्टिंग टेम्परेचर चार्ट सलेक्ट करुँगी
मेल्टिंग पॉइंट बनाम एटोमिक नंबर का चार्ट प्रदर्शित होता है
इस चार्ट में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट उच्चतम है
मैं मेल्टिंग पॉइंट चार्ट को बंद करुँगी
अब सीखते हैं कस्टम चार्ट कैसे बनायें
व्यू पर जाएँ एलिमेंट चार्ट सलेक्ट करें और कस्टम पर क्लिक करें
कस्टमाइज चार्ट विंडो और जीचेमटेबल ग्राफ विंडो स्क्रीन पर दिखती है
कस्टमाइज चार्ट विंडो बायीं तरह ग्राफ हायरार्की ट्री और दायीं तरफ ग्राफ प्रीव्यू रखती है
ग्राफ हायरार्की ट्री वर्तमान ग्राफ कंपोनेंट्स और उनकी हाइरार्की दर्शाती है
पैनल में दिए बटन्स उपयोग करके हाइरार्की को संशोधित किया जा सकता है
ग्राफ प्रीव्यू ग्राफ में स्केल किये हुए संशोधन का वर्जन दिखाता है
ग्राफ हायरार्की ट्री में आप ग्राफ और चार्ट 1 देख सकते हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से ग्राफ सलेक्ट किया हुआ है
अब नीचे पैनल पर जाते हैं
यहाँ स्टाइल और थीम नामक दो टैब्स हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
यहाँ हमारे पास दो शीर्षक हैं आउटलाइन और Fill
आउटलाइन शीर्षक स्टाइल कलर और साइज नामक 3 ड्राप डाउन्स रखता है
ये ड्राप डाउन्स ग्राफ की आउटलाइन प्रॉपर्टीज को बदलने में मदद करते हैं
स्टाइल ड्राप डाउन पर क्लिक करें और प्रदर्शित कोई भी लाइन स्टाइल्स सलेक्ट करें
उदाहरण स्वरुप मैं लॉंग डैश सलेक्ट करुँगी
सारे उपलब्ध कलर्स देखने के लिए कलर ड्राप डाउन एरो पर क्लिक करें
मैं ग्रीन कलर सलेक्ट करुँगी
साइज स्क्रोलर एरो पर क्लिक करें और साइज 30 पीटीएस तक बढ़ाएं
सारे बदलाव ग्राफ प्रीव्यू एआरईए में देखे जा सकते हैं
आगे फिल को देखते हैं
फिल में हम टाइप ड्राप डाउन बटन देख सकते हैं
टाइप ड्राप डाउन बटन पर क्लिक करें और पैटर्न सलेक्ट करें
पैटर्न की विशेषतायें नीचे प्रदर्शित होती हैं
ये पैटर्न फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सम्मिलित करता है
प्रत्येक विशेषता एक ड्राप डाउन रखती है जो विकल्प दर्शाता है जिसमें से आप एक सलेक्ट कर सकते हैं
अपनी पसंद का पैटर्न सलेक्ट करने के लिए पैटर्न ड्राप डाउन पर क्लिक करें
ऑरेंज कलर सलेक्ट करने के लिए फोरग्राउंड ड्राप डाउन पर क्लिक करें
ब्लैक कलर सलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड ड्राप डाउन पर क्लिक करें
ग्राफ प्रीव्यू एआरईए में ये सारे बदलाव देखें
आप अपने आप अपना थीम टैब विकल्प जाँच सकते हैं
अब ग्राफ हायरार्की ट्री में चार्ट 1 सलेक्ट करें
एड बटन पर क्लिक करें
विकल्प सूची से टाइटल टो चार्ट1 सलेक्ट करें
नीचे टैब्स का एक नया सेट खुलता है
डिफ़ॉल्ट रूप से डेटा टैब सलेक्ट किया हुआ है
टेक्स्ट क्षेत्र में चार्ट का टाइटल टाइप करें
मैं एटोमिक मस्स - फ्यूजन टेम्परेचर टाइप करुँगी
फोंट पर क्लिक करें
यहाँ आप फॉन्ट टाइप फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर बदल सकते हैं
मैं फॉन्ट साइज को 14 तक बढ़ाउंगी और फॉन्ट कलर को मरून से बदलूंगी
आगे टेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हैं
यहाँ आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन बदल सकते हैं
यह दो तरह से हो सकता है 1
पहला सीधे प्रीव्यू एरिया पर क्लिक करके 2
दूसरा स्क्रोलर उपयोग करके एंगल क्षेत्र बदलके
पोजिशन टैब पर क्लिक करें
मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को वैसा ही छोड़ दूँगी जैसी वो हैं
ग्राफ हायरार्की ट्री में वापस जाएँ और चार्ट 1 पर क्लिक करें
नीचे पैनल में तीन टैब्स स्टाइल पोजिशन और प्लॉट एआरईए दिखती हैं
डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
अब फिल पर जाते हैं
टाइप ड्राप डाउन में यूनिकलर ग्रेडिएंट सलेक्ट करें
डायरेक्शन ड्राप डाउन सलेक्ट करें और अपनी पसंद की डायरेक्शन सलेक्ट करें
इंड ड्राप डाउन सलेक्ट करें और अपनी पसंद का कलर सलेक्ट करें
ग्रेडिएंट की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ब्राइटनेस स्लाइडर को खींचें
पोजिशन और प्लॉट एआरईए टैब्स में विकल्पों को अपने आप जाँचें
अब एड बटन पर क्लिक करें
प्लॉट टो चार्ट1 सलेक्ट करें
क्सी बबल कोलोरेडक्सी और ड्रॉपबार नामक अनेक प्रकार के चार्ट्स के साथ एक सबमेन्यू खुलता है
प्रत्येक प्रकार का चार्ट अनेक सबचार्ट विकल्प रखता है
अब क्सी और क्सी लाइन्स चार्ट विकल्प चुनें
नीचे टैब्स का एक नया विकल्प खुलता है
डिफ़ॉल्ट रूप से स्टाइल टैब सलेक्ट की हुई है
इंटरपोलेशन पर जाएँ
टाइप स्क्रोलर पर क्लिक करें और बेजियर क्यूबिक स्प्लाइन सलेक्ट करें
फिल पर जाएँ
टाइप स्क्रोलर में बाइकलर ग्रेडिएंट सलेक्ट करें
दाता टैब पर क्लिक करें
चार्ट का नाम atomic मस्स वीएस फ्यूजन टेम्परेचर टाइप करें
X मैं x एक्सिस पर एटोमिक मस्स सलेक्ट करुँगी
Y मैं y एक्सिस पर फ्यूजन टेम्प्रेचर सलेक्ट करुँगी
मार्कर्स टैब पर क्लिक करें
चार्ट पर पॉइंट्स चिन्हित करने के लिए मार्कर्स उपयोग किये जाते हैं
मार्कर शीर्षक में हमारे पास शेप फिल आउटलाइन और साइज हैं
अब शेप में सर्किल सलेक्ट करें
फिल कलर को ब्राउन सलेक्ट करें और अन्य को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें
अब एप्ली बटन पर क्लिक करते हैं
आवश्यक चार्ट जीचेमटेबल ग्राफ विंडो पर प्रदर्शित होता है
अब इस चार्ट को इमेज की तरह सेव करते हैं
सबसे पहले जीचेमटेबल ग्राफ विंडो पर क्लिक करें
फाइल सलेक्ट करें और सेव एएस इमेज विकल्प पर क्लिक करें
सेव एएस इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल टाइप में पीएस डॉक्यूमेंट सलेक्ट करें
फाइल का नाम अपनी पसंद का टाइप करें
मैं my custom चार्ट टाइप करुँगी
मैं अपनी फाइल सेव करने के लिए लोकेशन में डेस्कटॉप सलेक्ट करूंगी
सेव बटन पर क्लिक करें
यहाँ मेरा सेव किया हुआ डॉक्युमेंट है
फाइल पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ डॉक्यूमेंट व्यूवर विकल्प चुनें
यहाँ मेरा ग्राफ है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा निम्न के एलीमेंटल चार्ट्स 1
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2
मेल्टिंग पॉइंट और कस्टम चार्ट्स कैसे बनायें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
निम्न जाँचें 1
भिन्न एलीमेंट चार्ट्स 2
अन्य क्सी चार्ट टाइप्स 3
बबल कोलोरेडक्सी और ड्रॉपबार चार्ट टाइप्स और 4
चार्ट्स को एसवीजी और पीडीएफ फाइल फोर्मेट्स में सेव करें
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद